इस फोटो मे एक कमरा है जिसमें एक अलमारी है जिसमे कुछ टी-शर्ट शर्ट पेंट और बॉल रखे गए है।